और एक आंटी एक औरत अ दो बच्चों के साथ खड़ी हुई है और ऊपर आसमान है उधर एक सेल्टर है।

पेड़ है बहुत सारे और उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग का और उधर एक बिल्डिंग है।

और नीचे लिखा हुआ है अंडर द एजेस ऑफ बिहार विकास एजुकेशन ट्रस्ट ।

और जो नीचे जो है नंबर लिखा हुआ है फोन नंबर --

उधर तीन से चार स्कूटर्स खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हम एक व्हाइट कलर की जो कार है इसे देख सकते हैं।